यह एक बस स्टैन्ड है जहाँ पर बहुत सारे बस लगे हुए हैं बगल में बिल्डिंग भी बना है।

हरियाली है यहां पे पेड़-पौधे भी है बहुत बड़ा-बड़ा पेड़-पौधे है।

ओ एक आदमी चक्का लगा रहा है।

एक बहोत अच्छा तरह से डेकरैशन किया हुआ है लाइट लगी हुई है कूलर है।